केकरो ब्याह छै बाजा बायेज रहल छै नाच रहल छै दस पंद्रह गो ढोल बजा रहल छै।

छड़ बंध रहल छै आदि ऊपर घर बन रहल छै पांच-छःगो मजदुर छै तार से बांध रहल छै।

एगो तलाब छै बहुत सारा गंदा फेकल छै गाछ छै एगो घरों छै लाल रंग के--

गेट बनल छै बगल में पूल छै बहुत गंदा पानी छै लाग रहल छै।

रहे वला आदमी के सिस्टम छै ऊपर से फेरो ओकर बाद बांध बनल छै पेन--

यहाँ पर एगो दी-दिल्ली पब्लिक स्कूल छै तीन चार मंजिला छै दू मंजिला छै।